जो आप देख रहें हैं इस इस स्क्रीन के तस्वीर में आपको यहाँ बहुत सारे लोग नज़र आएंगे और एक त्रिशूल के आकार में बना हुआ पेड़ का शेप नज़र आएंगे और ये कोई स्पोर्ट का खेलने --

है दो चार लोगो के लिए और इस जंगल काफी घना और बहुत पुराना सा लग रहा है और इस जंगल में कोई चीज़ का--

तस्वीर मे जो आप देख रहे है यहाँ पर एक --

और उसके नीचे बहुत सारे ग्रास जो है उसका ग्रो हुआ है और इसके पीछे में बहुत सारे जंगल के जैसे लग रहा है।

जो आप तस्वीर देख रहे है किसी मकान और के बीच में जो है एक छत का ढलान कार्य शुरू हो रहा है और यहां पर बहुत सारे लोग देखने को आपको मिलेंगे उससे पत --